ये किसी बिल्डिंग के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जोकि बहोत ही पुरानी और बड़ी सी बनी हुई बिल्डिंग है।

ये किसी मैरिज गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर गुलाबी और आसमानी पर्दों से --

कुछ लगे हुए दि दिखाई दे रहे हैं एक लाइट का बड़ा सा खम्भा भी लगा हुआ है जिस पे दो बड़ी बड़ी लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये किसी बड़े से गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर एक बड़ा सा लकड़ी का सर्कल --

मैदान में जोकि बहोत पक्का सा बना हुआ है सीमेंट वाला वहां पे बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी भारतीय डाक ऑफिस की तस्वीर दिखाई दे रही है यहां पर दो तीन बड़े-बड़े काउंटर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई है जो सभी फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ पेड़ के पास में काले कलर की मूर्तियां बनी हुई नजर आ रही है।

यहां पर तीन औरतें खड़ी है जो पेड़ को एक आदमी की कुल्हाड़ी से बचाव करती हुई नजर आ रही है।

यहां पर कुछ गमले भी टंगे हुए नज़र आ रहे है और यहां पर एक बड़ा सा हरे कलर का पर्दा लगा है जोकि छाया के लिए लगाया हुआ नज़र आ रहा --

लंबे बने हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर की ओर बहोत सारी लाइटें भी जली हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी एयरपोर्ट की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे पैसेंजर्स घूमते हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ सामान लेते हुए नजर आ रहे हैं यहां रोड पे बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।